और मस्जिद की बाउंड्री हो रही है मस्जिद के ऊपर छत पे जो छजली है उसमें भी अच्छे अच्छे कलर भरे हुए हैं।

तो ये जो तस्वीर है ये दिख रही है साहब इसमें जो है एक ग्राउंड है और ग्राउंड में जो है पेड़ खड़े हैं।

एक तस्वीर है ये किसी मंदिर के राज्य --

एक जगह एक पार्क में कुछ औरतें जमा है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के कोई डांस वगैरह या प्रोग्राम कर रही हो।

बस तीन लोग जों जीत रहा है वो आइडीया केयर है।

बच्चों के खाने के आइटम है और मीठ मसाले गुटके वगैरह ये सब चीज जो टंगी है और ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होती है।

और ये जो कुंड है काफी गहरा है और काफी अच्छा कुंड है।